ऊपर कुछ परदे दिखाई दे रहे है जिनका कलर ऑरेंज ब्लू और पिंक दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक रेड कलर की चेयर दिखाई दे रही है।